यह एक स्वीट्स की दुकान है जो कि बदायूं में है।

यह एक स्वीट्स की दुकान है जो कि यह बदायूँ में है।

यह एक केक है। जो कि काफी अच्छी तथा काफी मस्त डिजाइनों से बनाई गई है।

और इसमें बैठने से बहुत ही ज्यादा घबराहट होती--

जैसे कि यह और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ हम अपनी खेती भी कर सकते हैं।